डी एम कार्यालय में भी पाए जाते हैं फर्नीचर --

ओ किया जाता बेचा जाता है और यहाँ सर्विस सेंटर ही लग रहा है कि आईडिया के जो मोबाइल है उनको रिपेयरिंग भी की जाती है।

का पार्क है। जहाँ फूल पत्ती घास दिए जाते हैं। लोग सुबह शाम टहल नें जाते हैं। स्वास्थ्य ‌ और के लिए लाभदायक है। हरी घास आँख के लिए । देखने से आंख की बढ़ती है।

ये मार्ट है ये मेगा शॉप है वी-मार्ट है और --

दशहरा में भी इस प्रकार के मेले लगते हैं। छठ पूजा में भी इस प्रकार के मेले लगते हैं। जहाँ बच्चे सभी लोग आते जाते हैं और मनपसंद सामान खरीदते हैं।

दूध का भी सेवन करते हैं गाय को हरा चारा देते हैं घास खिलाते हैं।

इ इ डी मार्ट का सीन है जहाँ लोग --

खुदाई करने जाते हैं। जैसे शहर में बहोत ज्यादा मार्ट हैं। बड़े-बड़े शहरों में कई मार्ट हैं। हर मोहले में मार्ट है।